पहाड़ को छुया हुआ है बहोत एक पत्थर बहोत सारे पत्थर रखे हुई है उसने टी-शर्ट पहनी हुई है और जीन्स पहनी हुई है और जुटे पहने हुई है नीचे में बहुत सारे पत्थर रखे है सूखी लकडिया पड़ी हुई है।

एक बड़ा सा घड़ी लगा हुआ है बिजली की तारे लगी हुई हैं दुकाने बनी हुई हैं आइसक्रीम बिक रहे हैं इमारतें बनी हुई है पेड़ लगे हुए है पेड़ों पर हरे-हरे पत्ते लगे हुए है।

यहाँ पे एक आदमी एक बोतल लेकर खड़ा है जो हाफ पैंट और टी-शर्ट टी-शर्ट पहनी हुई है। हाथ में उसने एक घडी पहनी हुई है। वो खाली पैर खड़ा है और एक पीछे पहाड़ बना हुआ है।